और एक आदमी चेयर पर बैठा हुआ है।

और पीछे बहोत अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है पिंक ग्रीन और --

और शोरूम व्हाइट कलर का है ऊपर ब्लू कलर की लाइटें लगी हुई है।

है। बकरी बहुत सुंदर लग रही--

यहां खाली मैदान हैं ऊपर--